गाड़ी काले कलर की दिखाई दे रही है।

आदमी लोग बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सी भीड़ दिखाई दे रही है --

पीले कलर की जो है और सफेद कलर के दिखाई दे रहे है मुकुट भी दिखाई दे रहा है।

घंटी दिखाई दे रही है थाली दिखाई दे रहा है बहुत से फूल दिखाई --

पुल के आजू बाजू खंभे दिखाई दे रहे हैं।

एक तरफ एक नदी भी दिखाई दे रही है नदी का पानी सफेद दिखाई दे रहा है।

तार दिखाई दे रहा है।

पैकर दिखाई दे रहे हैं बहुत से सामान दिखाई दे रहे हैं --

बहुत से लोग खड़े दिखाए रहे हैं और --

फूल सफेद कलर का और लाल कलर का खिला हुआ दिखाई दे रहा है।

एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है उस ग्राउंड को --

उपस ये घर दिखाई दे रहा है घर --

और बाहर खड़ी भी दिखाई दे रही है अंदर खड़ी भी दिखाई दे रही है।

एसी दिखाई दे रही है बोहोत से लाइट दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग अ दिखाई दे रहे है बहुत सी बलून लगे हुए दिखाई दे रहे है गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

बहुत सी मशीन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।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

ये घर दिखाई दे रहा है घर के सामने --

एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड हरे कलर का दिखाई दे रहा है ग्राउंड के आजु बा --

एक ग्राउंड है उस ग्राउंड के आजूबाजू --

बहुत से पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहा है पेड़ हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है।

बहुत से सामान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक रोड दिख रहा है रोड के आजू-बाजू ये सीमेंट के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

उनके ऊपर बहुत मोटे-मोटे तारे दिखाई दे रही हैं।

बहुत से आदमी दिखाई दे रहे हैं।

गेट दिख रहे हैं गेट लाल कलर के दिख रहे हैं।

उसके आजूबाजू पेड़ भी दिख रहे है जो पेड़ की बड़े बड़े दिखाई दे रहे है।

पार्क में बहुत से पेड़ पौधे दिख रहे हैं हरी कलर की घास दिखाई दे रही है छोटी-छोटी झोपड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है।

मुकुट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं प्रतिमा टेबल पे रखी हुई दिखाई दे रही है।

सिर में सफ़ेद कलर का पानी दिखाई दे रहा है वो सिर के सामने --

एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में चेयर रखी हुइ दिखाई दे रहा है चेयर --

दो खंबे दिखाई दे रहे हैं खंबे पे बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मकान के सामने एक गाड़ी दिखाई दे रही स्कूटर दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान बुक शॉप की दिखाई दे रही है।

बैठा हुआ दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े छोटे-छोटे बॉक्सेस बने हुए दिखाई दे रहे हैं --

टमाटर दिखाई दे रहे हैं टमाटर हरे कलर के पीले कलर के --

एक ग्राउंड दिख रहा है उस ग्राउंड पे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक रोड दिख रहा है रोड के प ईंट का रोड दिख रहा है।

उस रोड के बाजुसे एक मकान भी दिखाई दे रहा है।

आदमी आते जाते हुए दिखाई दे रहे --

बड़ा सा गेट दिखाया जा रहा है खिड़की दरवाजा दिखाई दे रहे हैं --